और इस पर एक नेकलेस लटकाया हुआ है।

टेबल के ऊपर एक भाइट कलर की प्लेट्स है।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

और इसकी छत का कलर भी रेड दिखाई ने रहा है।

पीछे नीला आसमान नजर आ रहा है।

पर ब्लैक वाइट कलर की बस --

यहां पर एक रेड कलर की वाइट लगी हुई है।

उसका कलर ऑरेंज दिखाई दे रहा है।

बस के शीशा टूटा हुआ नजर आ रहा है।

एक में बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है।

खन्ना संस लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर मुझे बहुत ही शॉप्स दिखाई दे रही हैं।

और साथ में सड़क भी नजर आ रही हैं।

बाहर बहुत सी बिल्डिंगें नजर आ रही है।

उन पर तरह-तरह के लहंगे पहने हुए हैं।

यहां पर बड़ी-बड़ी मशीनें नजर आ रही हैं।

जो हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं।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

पीछे से बहोत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

यहां पर मुझे एक फूलों की शॉप दिखाई दे रही है।

और आगे खिड़की नजर आ रही है।

और यहां पर बहुत सी बाइक्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

और मेकअप का सामान भी नज़र आ रहा है।

जिसके ऊपर बहुत से विद्यार्थी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर से ट्यूबें लगी हुई हैं।

और यहां पर बहोत सी टेबल और कुर्सियां भी बिछाए हुए हैं।

जिसके अंदर बैठने के लिए और धूप से बचने के लिए एक छतरी बनाई हुई है।

जो एक बिल्डिंग की सीढ़ियां लग रही हैं।

यहां पर बहुत से व्यक्ति अंदर बैठे हैं।

बाल कटता हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर मुझे बहुत बड़ी शॉप दिखाई दे रही है।

इन मूर्तियों को अलग अलग प्रकार के --

और साथ में ही इनके हाथ में एक एक गिटार --

और उसके पीछे बैलूंस भी नजर आ रहे हैं।

पीछे मुझे तरह-तरह की बुक्स नोटबुक। --

बुक दिखाई दे रही है साथ में ही--

यहां मुझे बहुत बड़ा बेडरूम दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक टेबल कुर्सियां लगी हुई है।

पीछे दीवारों का कलर भी वाइट नजर आ रहा है।

एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे बहुत सी शॉप दिखाई दे रही हैं।

बस के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है।

जो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

जूते का रंग ब्लैक दिखाई दे रहा है।